मैदान के बीच में एक रोड दिखाई दे रहा है दूर की तरफ बहोत सारे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर ऊपर की तरफ में बहोत सारे तार दिखाई दे रहे जो पोल से कनेक्टेड है बगल में एक घर भी दिखाई दे रहा--

मैदान में बहुत सारे घास पौधे में दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ हमे एक लाल रंग की एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पटरा दिखाई दे रहा है जो उजले रंग के है।